बराबर में पहाड़ हैं उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक कमरा है।

बराबर में पेड़ पौधे हैं और यहां पर एक आदमी है।

यहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और बड़े भी हैं।

यहां पर एक रे रेस्टोरेंट है।

यहां पर एक हाईवे है।

यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

एक यहां लैटरिंग बाथरूम है। उस पर सफेद कलर का पेंट हो रहा है।

यहां पर शादी के समान है टेंट ओन्ट लग रहे हैं।

गमले है यहां पर पेड़ पौधे भी है बहोत सारे।

इस फोटो में एक तालाब है जो एक खाली जगहों पर बना हुआ है।

यहां पर ट्रैक्टर का मिस्त्री है।